यहाँ पर एक दुकान है और इसमें पंखे भी है और एक चेयर है और बहुत सारा समान है।

यहाँ पर हरा-भरा फील्ड है और इसमें बहुत सारा ट्रांसफर है।

यहाँ पर टेबल पर बड़े-बड़े मछली हैं और सारे लोग खरीद भी रहें हैं और टेंपो भी है जिसमें सारे लोग बैठे हुए हैं अपने-अपने घर जाने के लिए और कुछ लोग बाजार भी जा रहें हैं |

यहाँ पर कुछ मकान बने हुए हैं जिसमें दो लोग खड़े दो लोग बना रहे हैं और कुछ रस्सी है और --

कुछ पहाड़ी हैं और उसके अगल-बगल में कुछ और ये पेड़ पौधे हैं और और कुछ झरने हैं जो पानी ऊपर से गिर रहा है।